और जंगल हल दू-दूगो एगो दुगो तीनगो चारगो उनने करिया पेड़ हई ओने एगो घर हय।

आजे में जू गो आदमी बैठल हेय।

दुगो हिरण हई ओनहु करिया हिरण हई पेड़ हई जेन्ने से घेरल हई ओकरा भीतर पेड़ हई इतना पेड़ हई खाइत हई।

अया फूल हई कइगो कलर के त दूगो कलर के अ फूल हई दुभि हई हिन्ना करिया पियर-पियर फूल हई फूल हई|